वाइट कलर की है एक लोडिंग खड़ा है लोडिंग रेड कलर का है।

पास में पौधे लगे हैं।

इस इमेज में एक जंगल है जंगल में घास लगी है जंगल में पेड़ है।

शॉप साड़ी की है बाहर साड़ी टंगी है।

इस इमेज में एक आदमी खड़ा है।

इस इमेज में एक रूम है रूम वाइट कलर --

इस इमेज में एक फार्म हाउस है।

ग्राउंड है ग्राउंड मे रेड कार्पेट बिछा है टेंट लगा है दो आदमी खडे हैं।

मस्जिद वाइट कलर की है।

मस्जिद में टाइल्स लगे हैं ऊपर काला पंखा लगा है।

इस इमेज में एक रूम है।